गार्डन भी है और पेड़ -पौधे हरे -भरे दिख रहे है पूल भी हैं।

हरे-भरे दिख रहे हैं और रस्सी दिख रहे हैं और वहाँ पास कपड़े दिख रहे हैं।

और गाड़ी हैऔर सन की क्रिस्टल में हैऔर अच्छे दिख रहे है।